ये एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई हैं ।

नवी मुंबई का प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन हैं ।

जिसका नाम कंसोली हैं ।

टेररिस्ट का इलाका हैं जहाँ पर लोग --

वहां पर कुछ पापलेट भी है कुछ सुरमई भी है और कुछ हलवा मछली भी है।

और एक्सप्रेसो सब मिल रहा हैं यहाँ यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ हैं जहाँ पर वनप्लस वन --

यहाँ पर इस द्रश्य में देखा जा सकता हैं जैसे कुछ लोग --

अपनी बस के इंतजार में खड़े हुए हैं ।

गार्डन में वॉक करने के लिए आए हैं ।

अपनी टिकट निकाल चुके हैं ।

वगैरह सभी या डिस्प्ले में रखा हैं ।

लड़के और लड़कियाँ सभी --

आनंद महसूस कर रहे हैं ।

बारहवीं कक्षा का कॉमर्स क्लासरूम हैं ।

ईस्टर का समारोह हैं ।

सभी तरह के वाटर बॉटल्स --

प्राचीन काल की गुफा हैं ।

जहाँ पर लोग --

और आनंदित हो रहें है ।

ये एक सैलून का उद्घाटन हैं जहाँ पर लोग --

ये एक नर्सरी हैं जहाँ पर काफी प्रकार के पेड़ पौधे और --